ये एक सरकारी पार्क है और यहाँ पार्क में काफी साफ-सुथरा दिखाई दे रहा है। कुछ पेड़ के पत्ते भी जमीन पर पड़े हुए हैं।

और इसमें काफी खूबसूरत गुंबद भी बनी हुई है और इसमें दरवाजा भी बहोत अच्छा है।

यह एक मैदान सा फोटो है और इसमें मैदान में आस-पास काफी पेड़ खड़े हैं जोकि पतझड़ हो चुके हैं।

इसमें काफी अच्छी-अच्छी चीजे मिलती हैं और ये बहोत ज्यादा ही खूबसूरत है इसकी खूबसूरती बता रही है की इसमें काफी साफ सुथुराई मौजूद है।